इस तस्वीर में मुझे एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी दिखाई दे रहा है।

इमारत के सामने मोटर साइकिल का एक समूह खड़ा है।

इस तस्वीर में एक पीले रंग का पेंडल दिख रहा है जो एक पंडाल या उत्सव के लिए बनाई गई संरचना है।

इमारत में कोइ गुम्बंद और सजावट तत्व है।

तस्वीर में एक पानी का पार्क दिख रहा है।

पीछे कुछ पेड़ और एक इमारत दिख रही है।

तस्वीर में एक नदी का दृश्य दिख रहा है।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

बाईं ओर अलमारियां स्नैक्स बिस्कुट और अन्य पैकेट सामानों से भरा हुआ है।

छवि में एक बह बहती हुई नदी दिखाई दे रही है जिसके दोनों ओर चट्टान है और--

महिलाओं के चेहरे धुंधले किए गए हैं।

आसपास का क्षेत्र एक पार्किंग स्थल है और कुछ अभिक्षित भूमि प्रतीत होता है।

इस तस्वीर में एक कमरे का अंदरूनी हिस्सा दिख रहा है।

पानी में रोशनी का प्रतिबिंब दिख रहा है जो बताता है कि आसपास कुछ रोशनी वाले क्षेत्र है।

दूर किनारे पर कुछ इमारत या संरचनाएं दिख रही है।

दुकान के सामने तीन लोग खड़े हैं दुकान में कुछ सामान दिख रहा है।

स्टॉल पर कुछ बर्तन एक तवा और खाना रखा हुआ है।

एक व्यक्ति जिसके पीठ अह पीठ कैमरे की ओर है और उससे नीले और सफेद ट्रैक पैंट पहनी है वह मैदान के किनारे खड़ा है।

एक दुकान ट्रीबे स्टोर नाम से दिखाई दे रहा है।